हॉल के अन्दर टाइल्स मार्बल सब चीज लगल छै अन्दर में एगो बहुत दूर में लगे छै कोय ठरा रहे एगो गड़ी लगे छै उनने रहे ।

वाह वाह वाह क्या फुल लड़ी से सजाया है बाल्टी अरिन मुक्त कलर-कलर के फूल आरिन छै सितारा आरिन छै।

ऐ उगम चीन कंपनी छे ओमे लिखल छे कर्नल कबाब चारगो मोटरसाइकिल छे एगो हरा कलर के साईकिल छे।